बगल बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी लगा है यहाँ पे बैठने बो अब गेज गिरा है और यहाँ पर सब --

तीन आदमी है यहाँ पे बहोत सारे बच्चे भी है यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे जेसे भगवान है।

यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लिखा है इस बोर्ड पर हमें पता नहीं है क्या लिखा है यहाँ पर इसके नीचे जिब जाईया यहाँ पे पेड पौधे भी लगे है यहाँ पर हरियाली भी दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी--